और बहोत ही अच्छा लग रहा है और इधर देख सकते हैं आपलोग रोड बोड भी है जहां की आदमी सब भी हैं और यह आदमी सब तेल बेल बढ़ने के लिए आये हुए हैं एक आदमी का तेल खत्म हो गया।

गोपालगंज ए_टी_एम है गोपालगंज बहोत ही अच्छा जगह है और यहाँ पे दो चार बाइक है और यहाँ पर आदमी सब भी है।

और बहोत ही खुबसुरत लग रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रिकॉर्डिंग यहाँ पे ये आदमी सब भी है और रुमाल वूमाल--